एक पेड़ लगा हुआ है एक व्यक्ति बाहर की ओर अपनी साइकिल को पकड़े हुए --

कुछ लाल पर्पल पिंक सिल्वर ग्रीन हैं।

उनके ढक्कन अलग-अलग रंगों के भी बने हुए हैं ग्रीन पिंक ब्लू रेड और --

एक चेयर रखी हुई है जिस पर दूल्हा-दुल्हन बैठेंगे।

लकड़ियों के द्वारा सहारा दिया गया है। छोटे छोटे --

आजू-बाजू बहौत सी वाटर एक्टिविटी के लिए जगह है।

ऑटो खड़े हुए हैं। लोग अपना काम करते हुए अपने गंतव्य तक --

घरों के बनाए गए हैं। ऊपर के झरोखों के बाहर --

रेलिंग लगाई गई है जोकि पत्थरों से बनी बनी हुई है।

लेकिन रंग अलग-अलग हैं कुछ गुलाबी कुछ पीले कुछ चॉकलेटी --

अलग-अलग रंगों के केक सजाए गए हैं सभी पर एक सी --

डिजाइन बनाई गई है व्हाइट और रेड --

मस्जिद बहुत पुरानी है। जिस कारण उसके पिलर पर छोटे-छोटे पौधे हैं।

जिसमें बहोत बड़े-बड़े मिरर लगे हुएं हैं। मिरर के सामने --

बच्चा एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं।

ये मुंबई महाराष्ट्रा के डॉक्टर हैं।

कनेक्ट करने के लिए तार का प्रयोग किया गया है। आस-पास।

अलग-अलग प्रमिड नुमा पिलर बनाए गए हैं।

कुछ बड़ी-बड़ी आकृतियां तो कुछ छोटी छोटी आकृतियां --

बड़े-बड़े आकार के लंबे नुकीले से --

बाजू में ग्रीन कलर की घास जैसे --

कार बहुत बुरी तरह से टूटी है।

इसके बाहर एक बाइक खड़ी हुई है। पिलर रेड और वाइट है।